फ़ायर ब्रिगेड है और यहां पर--

हिल्स के चाइल्स अपना काम करते हुए नजर आ रहें हैं।

हेयर स्टाइल करवाने आते हैं यहां पर दो बॉयज हैं एक बॉय --

फैमिली होटल का रूम है यहां पर एल_इ_डी टी_वी नजर आ रही है यहां पर फैन है यहां पर--

ये किसी फंक्शन की पिक्चर है यहां पर दो जैन्ट्स --

कैफे नजर आ रहा है कैफे में दो बॉयज --

पिंक कलर के व्हाइट कलर के हैं डार्क ब्लू कलर --

टू व्हीलर्स हैं और साइकिल्स हैं और रोड के--

होटल का रूम नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारे चेयर्स हैं।

शॉप्स अ नजर आ रही हैं एक से जाये शॉप्स हैं यहां पर।

रेस्टोरेंट नजर आ रहा है रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल्स हैं चेयर्स है रेस्टोरेंट्स में --

यहां पर दो आ बिल्डिंग्स मटेरियल्स स्टोर्स का पोस्टर नजर आ रहा है यहां पर बिग ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक पोल और एक --

अपने फ्रेंड्स के साथ यहां पर हो रहे--

ये शॉप नजर आ रहा है यहां पर हर तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं हमें।

और एक्जांपल यहां पर चॉकलेट्स हैं कैडबरीज हैं बिस्किट्स हैं।

और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं फॉर एग्जांपल रूह अफ़ज़ा वगैरा यहां पर बहुत सारी ड्रिंक भी है।

यह मस्जिद न मस्जिद में मदरसे की क्लास नजर आ रही है जहां पर बहुत सारे --

यहां पर बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं बच्चे कुछ बच्चे जंपिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे रनिंग कर रहे हैं यहां पर ---

यहां पर स्टूडेंट्स का इस स्कूल का पार्किंग एरिया नज़र आ रहा है यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने--

क्लॉथ लेडीज क्लॉथ सेंटर नजर आ रहा है यहां पर क्लॉथ्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर फोर व्हीलर का शोरूम नजर आ रहा है शोरूम में --

दो फोर व्हीलर वाइट कलर की नजर आ रही है उसके पीछे कुछ --

ब्लैक कलर के फोर व्हीलर्स हैं और यहां पर पोस्टर्स हैं लाइट्स वगैरह नजर आ रहे हैं।

लेफ्ट एंड राइट साइड शॉपिंग्स नजर आ रही है।

लेडीज एंड जेंट्स नजर आ रहे हैं यहां पर लाइट्स है और यहां पर शोरूम्स की कांच वगैरह नजर आ रही है।

स्टूडंट्स को गाइड करते हुए बोर्ड पर लिखाते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर तकरीबन --

ये जननल स्टोर नजर आ रही है यहां पर चेयर है यहां पर बेसिन --

यहां पर फंक्शन अटेंड करते हुए बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं कैमरा मैन है बहोत सारे टेबल्स और चेयर्स हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इसके अलावा लाइट्स हैं यहां पर एल_ई_डी है पीकर नजर आ रहा है।

ह प्लास्टिक बैग में पैक है तो कुछ प्रोडक्ट --

ऑपरेशन थिएटर नजर आ रहा है यहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक पोल्स और फोर व्हीलर्स नजर आ रही हैं।

ए_सी है इलेक इलेक्ट्रॉनिक।

वाटर पार्क इस पिक्चर में नजर आ रहा है वाटर पार्क में--

रिक्शा है बाइक्स है और बाइक पर सवार एक --

बहोत सारे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं और दूर से--